इस इमेज में ऐसा लग रहा है एक लड़का खड़ा होकर मैपिंग कर रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और--

बाहर बहुत सारे लोग है अंदर भी लोग है और कुछ अ सेलिब्रेशन के लिए बाहर बहुत सारी कैंडल्स जलाई हुयी है मस्जिद के बाहर।

बहुत ज्यादा ठंड का मौसम दिख रहा है एक बस खड़ी है एक साइकिल खड़ी है।

ऐसा लग रहा है इस इमेज में एच.डी.ऍफ़.सी बेंक के बाहर ऐ.टी.म के बहार एक वॉचमैन खड़ा है और बहुत से लोग है।

अ बहुत ही बेहतरीन व्यू है इसमें और बहुत से बच्चे है छोटे छोटे बच्चे है जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे है वो पुशअप्स कर रहे है जमीन पर।

इस इमेज मे हम देख पा रहे है की ये एक अ-दो-बा लोग है एक बच्चा है जो बार्बर बने हुए है वो पोज़ मे खड़ा है एक बार्बर शॉप मे और जो दूसरा व्यक्ति है वो टी.वी देख रहा है।

इस इमेज में हम देख पा रहे है अ तीन आदमी है जो की कंस्ट्रकशन कर रहे है शायद किसी घर का कंस्ट्रकशन चल रहा है।

वेट कर रहे है ऐसा लग रहा है की वो वोचमेंन है और वो रिश्तेदार का वेट कर रहेहै महेमन को कर रहे है।

जैसे की हम देख पा रहे है इस मैच मे की बार्बर शॉप मे एक लड़का हेयर कटिंग कर रहा है दूसरे लड़के की।